इस फोटो में मुझे बिजली के कमरे दिखाई दे रहे--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

इस फोटो में मुझे बच्चे नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं।